यहाँ पर बहोत ही कचरा डरा हुआ दिखाई दिया जा रहा है यहाँ पर कुछ सड़क पर व्यक्ति जाते हुए दिखाई दी जा रहा है और सामने सारी मकान बने हुए भी दिखाई दिया जा रहा है ऐसे तो सिटी दिखाई दी जा रही हैं।